और यहाँ पे आगे में फूल लगी हुई है ऊपर में बैलून भी लगी हुई है सजावट बहुत अच्छा लग रहा है देखने में बहुत मस्त जगह है ये।

वहाँ पे खलियान है खेत खलियान है और इन पानी मे नाव जा रहा है।

और देखने में बहुत सुंदर लगता है और ये बहुत बुक दुकान में रखी हुई है और अच्छा लगता है।

यहां पे सैलून है जिसको हम लोग नाई बोलते हैऔर यहां पे देखने मे बहुत सुंदर लगता है ये मोबाइल लिया हुआ है।